उसके साइड मे एक घर नजर आ रहा है ऊपर की तरफ ग्लास लगे हुए है और वायर भी नजर आ रहा है।

ये पाँच छ मंजिल इमारत है सामने की तरफ केबल्स नजर आ रहे है और कुछ वायर भी है एक सड़क पर कुत्ता भी है।

कार्यालय के इसमें साइड सामने की तरफ इसमें एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है इसमे आई_ टी_आई कार्यालय लिखा हुआ है सामने की तरफ एक रास्ता है।

पीछे एक कंस्ट्रक्शन साइट है साइड में ब्रेक नजर आ रहे है इसमे पेड़-पौधे नजर आ रहे है दो बाइक खड़ी हुई है।

इसमे कलश लगा हुआ है पीछे की तरफ दो पेड़ नजर आ रहे हैं और सामने ग्राउन्ड है जिसपे ग्रीन कलर की पत्तियां भी पड़ी हुई हैं।

सामने की तरफ वाइट कलर के मंदिर बना हुआ है उसमे पीतल का कलश लगा हुआ है इसमें बहुत सारे पेड़ है जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ है।

कोचिंग क्लासेस है इसमे सामने की तरफ एक जाने का रास्ता है नीचे स्टेप्स बनी हुई है साइड मे एक विंडो है।

हिल है इसके सामने बहुत बड़ा गेट है सामने से एक सड़क है दो कारे खड़ी हुई है एक सीधी कार खड़ी हुई है एक उलटी कार खड़ी हुई है।

सामने दो मिरर लगे हुए है सामने रेख बनी हुई है जिसमे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए है जिसमे क्रीम पाउडर इत्यादि समान रखा हुआ है सामने काउन्टर बना हुआ है जिसमे पानी की बोतल स्प्रे बोतल ब्लैड रखी है।